इस चित्र में हमें एक कमरा नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है। टायर का कलर कल है।

इस सर्विस सेंटर के बाहर हमें एक व्यक्ति टी-शर्ट पहने हुए खड़ा नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ बिल्डिंगस नजर आ रही है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यह एक जंगल का दृश्य है।

इस चित्र में हमें एक कपड़ों की दुकान नजर आ रही है।

यह शोरूम पत्रें का बना हुआ है एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक बहोत ही सुंदर घर दिखाई दे रहा हैं।

दुकान में बोहोत सारा सामान रखा हुआ है।

इस कमरे में हमें एक लकड़ी का कपबोर्ड दिखाई दे रहा है साथ ही हमें एक--

इस चित्र में हमें एक बाजार का दृश्य नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हे।

यहाँ पर बहोत लोगों की भीड़ नजर आ रहीं हैं।

यहाँ पर हमें कुछ डब्बे दिखाई दे रहे है तथा कुछ कार्टून्स के डिब्बे दिखाई दे रहे है।

सड़क के किनारे खेत तथा वृक्ष नजर आ रहे हैं यहां हमें एक क्रेन नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक व्यक्ति फिसल पट्टी से फिसल रही है इस पार्क में कई अन्य व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस बिल्डिंग में हमें दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।